अलग अलग स्ट्रक्चर से दोनों बने हैं। इनमें से एक लम्बा है।

एक बड़ा सा कमरा है वहा पे दो एक बडा वाला पंखा लगा हुआ है दो लाइट लगी हुई है कुर्सियां है मेज है वहा पे फाइले रखी हुई है।

यहाँ पे एक लेडिस खड़ी हाफ टी शर्ट में --

सामने में एन्क्लेव खुला हुआ है। उका गेट है। वहा पे दो से तीन दुकाने दिख रही है। रोड है और गेट के सामने एक स्कूटी है जो गेट खुला हुआ है।

फूलों से सजावट है कुछ सोफे रखे हुए है।

और दो लोग यहाँ पे खड़े है आपस में बात कर रहे है और कई सारी जीमो की मशीने रखी है माटी पड़ी हुई है।

एक बडा सा हार है हाल में स्टेज के पास एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति खम्भे के पस खड़ा हुआ है जैकेट पहने हुए।

ये बड़ा सा हॉल है रखी हुई है कुर्सी रखी है और उसमें प्लेट रखी हुई है तीन से चार और चमच्च रखे हुए है और कई जगह--